इस तस्वीर में हमें तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

वह लोग खाना खा रहे हैं।

मनुष्य ने हरे रंग की टीशर्ट और ब्लू रंग का शॉर्ट्स पहना है।

में हमे एक टी_वी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें तीन व्यक्ति दिख रहे है जो कि मजदूर है और वो घर बनाने का प्रयास कर रहे है।

कुछ चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं।

बैंक की वॉल में हमें कुछ पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं।

में हमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

बहुत दूर मे हमें हरा और पीले रंग का पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

गेट के अंदर हमें कई सारे बस दिखाई दे रहे है।

वाहन के बगल में कुछ मनुष्य चल के जा रहे है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।